कुछ पुरुष बाहर बैठ के चेयर पे इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक में एक घड़ी भी टंगी है।

जिसमे चार बालिकाए दौड़ती हुई दिखा रहीं दिखाई दे रही है सब ने रनिंग ड्रैस कोड पहन रखा है सब ने एक स्पोर्ट्स शूज़ पहन रखा है।

सब्जियों मे टमाटर मटर गोभी खीरा चुकंदर पत्ता गोभी है।

फ़ोटो में एक स्टेट बैंक की ए_टी_एम दिखाई दे रही है जिसके अंदर ए_टी_एम _मशीन है। ए_टी_एम_ मशीन से हम पैसा निकाल सकते हैं।

दरवाजे से हम देख सकते है अंदर की कुछ तस्वीर जिसमें दो आदमी खड़े है कुछ कर्मचारी बैठ कर काम कर रहें हैं।

टी_वी के नीचे एक डेक्स डेस्क है जिसके अंदर कुछ सामान रख सकते हैं।

ए.टी.एम के सामने एक वृक्ष है वृक्ष हरा भरा है वृक्ष के बगल में एक भवन है।

यह फोटो किसी लेडीज ब्यूटी पार्लर की है जहाँ पे एक औरत अपना हेयर कलर करा रही है।

बड़ी मशीन दिखाई दे रही है। बैंक के ऊ ऊपर एक महिंद्रा फाइनेंस का बोर्डिंग लगा हुआ है।